एक वाइट कलर का बस है ।

उसके बाद से फूल लाया है राज्यपथ परियोजना का एक बस है फिर यही बस --